और कुछ लोग खड़े भी हैं मंदिर के बाहर बहुत बड़े-बड़े पेड़ हैं जिसके वजह से मंदिर के बाहर की आकृति नजर ही नहीं आ रही --

इसके आलावा झील के अंदर या बाहर न ही कोई व्यक्ति है न ही कोई जानवर है और झील के पानी का रंग मिट्टी के जैसा है ।

सजा के रखे गए है और पुतलो को कुछ कपड़े पहनाए गए हैं दिखाने के लिए एक कुरता जो है वो लाल रंग का है और बाकी अलग-अलग रंग के --

इस तस्वीर में एक समारोह का दृश्य दिखाया गया है जो कि शायद भगवान् बुद्ध से सम्बंधित है ।

फ़ोन रखे गए है और जियो फ़ोन का विज्ञापन भी लगा हुआ है वहाँ पे उसके दिवार का जो रंग है वो हल्का बैगनी कलर का है ।

उसके आस-पास बहुत बड़े-बड़े पत्थर है और झाड़ी नुमा पेड़-पौधे है।

इस तस्वीर में एक व्यक्ति नीले रंग के बेड पे अपनी ग्रे रंग की शर्ट प्रेस कर रहा है तस्वीर शायद अस्पताल की है लेकिन --

यहाँ बहुत सारे लोग बाल कटवाने के लिए आए है एक छोटा लड़का कुर्सी पर बाल कटवा चुका है और एक छोटा लड़का बाल कटवा रहा है।

इस तस्वीर में एक वैज्ञानिक अतिथि गृह का दृश्य दिखाया गया है जिसके बाहर का दृश्य बहुत सूंदर है यहाँ बहुत --

और उसके घरो के आगे बहुत सारे पेड़ लगे हुए है मैदान जो है उसमें बहुत घास लगी है और पानी से भरा हुआ है वो --

इस तस्वीर में जो दृस्य दिखाया गया है उसमें एक बन रही ईमारत का दृस्य है जो की अभी बनना शुरू ही हुई है।

लेकिन अभी भी बहोत मजबूती से खड़ी है और इसके इलावा उसके आस-पास हल्की हल्की झाड़ियां है आसमान साफ है।

इस तस्वीर में एक मछली बाजार का दृस्य दिखया गया है जहाँ पे बहुत साफ-सफाई से मछलियों को बक्सों में रखा गया है।